यह एक बाजार है यहाँ फलों की दुकान लगी हुई है और कई तरह के फल सजे हुए है दुकान पर इलेक्ट्रिक तराजू भी है पीछे दो टोकरी लटकी हुई है और पीछे एक आग बुझाने वाला सिलेंडर --

यह एक दुकान है जहाँ पर कुछ मशीने रखी हुई है।

और ये सीढिया है जो बैगनी कलर से पेंट की गयी है और घास है और झाड़िया है।

यह एक झांकी है जिस--जिसे काफी लोग देख रहे है और एक व्यक्ति जो फोटो मोबाइल से फोटो खीच रहे है।

और झांकी के बगल मे केले के पेड़ है और--

यहाँ इसमें एक तराजू रखा हुआ है पीछे दो लोग हैंऔर एक लड़का मास्क लगाए खड़ा हुआ है मछली भी रखी हुई है।

कुछ लोग है जो अपने-अपने काम में व्यस्त है दीवाल का कलर व्हाइट है सामने एक दीवाल घड़ी लगी हुई है।

और जहाँ पर कुछ लोग खड़े है वहाँ पर एक पेड़ है काफी हरा भरा है।

एक हॉल है और हॉल मे कुछ लोग है और हॉल का कलर हॉल के दीवाल का कलर पीला है और फर्श का कलर काला है।

यह एक गली है गली में स्टूडेंट है स्टूडेंट बेंच पर पेंटिंग कर रहे है और स्टूडेंट के पीछे--

यह एक हॉल हैं ।

एक हॉल है हॉल में कुछ मेज पड़ी है मेज के पीछे एक अच्छा सा पोस्टर है पोस्टर के बगल में एक पर्दा लगा है जो नीले रंग का है उस पर कुछ गुब्बाड़े हैं।

गली के दीवार का कलर लाल है और गली में एक खिड़की है और एक दरवाजा है और गली में फर्श पर कैंची रखी हुई हैं।